जिनके अंदर सफेद गुलाबी बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल लगाए गए हैं।

जमीन के ऊपर बहुत ही प्यारे-प्यारे टाइल्स लगे हुए हैं सामने की तरफ स्टेयर्स बने हुए हैं यहाँ पर एस.बी.आई कार्ड लिखा हुआ है एक--

अ स्टील के कुछ पाइप्स लगे है इनके ऊपर रेड कलर के रिबिन लगे हुए है एक बड़ा -सा ब्लैक कलर का डेसबिन रखा हुआ हैं।

ये एक टीचर खड़ी हुई है जिन्होंने साड़ी पहन रखी है वो सबको डायरेक्शन बता रही है आसपास कई सारे बड़े बड़े पेड़ लगे--